एक टप पड़ा हुआ है नीचे की साइड --

यहाँ पर बहुत बड़ा अ मैदान सा दिख रहा है हरा-भरा और बहुत से पेड़ दिख रहे है।

यहाँ पर एक मैदान सा दिख रहा है एक अअअ फोर व्हीलर कार खड़ी हुई है यहाँ पर बिना नंबर प्लेट की --

यहाँ पर एक सामने ब्लू कलर की दीवाल दिख रही है और एक तस्वीर लगी हुई है यहाँ पर ब्लू कलर में और गेट दिख रहा है यहाँ पर लड़की का--

अ बड़ा सा बोर्ड दिख रहा है उसपे कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर एक बिल्डिंग --